ये जो आप फोटो देख रहे हो ये फोटो जे_के मॉल प्लास्टो का है जोकि जे_के सेनेटरी स्टोर लिखा हुआ हैं लाल कलर के बैनर के ऊपर--

ये टेबल और बेंचेज जो आप देख रहे हो ना ये एक हॉस्टल के किचन एरिया का फोटो है।

और ये रोड के जस्ट साइड में ही है और ये बहोत बड़ा स्पेस है आप देख सकते हो लकड़ी कि सीढ़ी भी रखी हुई है।

और आप देखा सकते हो इसमें बुद्धा जी का फोटो भी लगा हुआ है मतलब जैन के जो होते है गुरुजी उनकी फोटोस भी लगी हुई है।

और इसमें डंबल में रखे हुए हैं और कुछ शेतर वगैराह भी रखें बिल्कुल सामने और--

ये फोटो केरला की फोटो है और केरला होटल की फोटो है जहां पर आपको वेज और नॉनवेज --

एयरपोर्ट का फोटो है और अब देख सकते हो सवारी मतलब जो मेंबर्स है वह इधर उधर आने जाने लग रहे हैं आदमी--

ये फोटो अ इंस्पेक्शन हार्ट भिंडवए सेंचुरी की हैं।

ये एक क्लीनिक की फोटो है जो अमन हेल्थ क्लिनिक है डॉक्टर मोहिंदर सिंग बैठते हैं इसमें।

और आप देख सकते हो सोफे पे बैग रखा है किसी कस्टमर का और अंदर वाश बेसिन आ है जिसमें हैंड वॉश होते है आप देख सकते हो चेयर भी है वहां पे पर्दे के पीछे।